यहां हमें बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं.

ऑनेस्ट जैसा एक मॉल भी दिख रहा हे यहाँ--

हां हमें बैंक भी दिख रहा है जिस--

यहां हमें चटपटा चार्ट हाउस की दुकान दिख रही है. यहां

हां हमें पुचका की तस्वीर दिख रही है चाट का तस्वीर दिख रहा--

यहाँ एक अंकल बूढा जैसा कोई खड़ा हे जिसका वाइट बाल हे.

यहाँ हमें एक प्लेट देखने को मिल रहा हे.

यहाँ हमें एक स्विच भी देखने को मिल रहा हे इलेक्ट्रीक स्विच .

सभी ने सेंटा क्लॉज़ की टोपी पहनी हुई है।

इसमें हमें बोहोत सारे पौधे पेड़ पौधे दिख रहे हे.

में हमें बहुत सारे आदमी और एक आंटी दिख रही है.

जिन्होंने येल्लो रंग का सूट पहेना हुआ है और ब्लैक कलर का दुपट्टा --

यहाँ हमें एक प्लस का साइन दिख रहा है.

यहां हमें एक फ्रिज देखने को मिल रहा है.

यहाँ एक बोर्ड में न्यू अनूप साइकिल लिखा हुआ है.